बिल्डिंग हे लाइट्स सोलर वाला लाइट हे जमीन हे टाइल्स हे व्हाइट कलर से पोता हे दीवाल ह कपड़ा सूखे हे।

आईना हे कुर्सी हे क्रीम पाउडर--

इंसान हे पानी वाला बहुत आदमी बइठे हे जो टीशर्ट पहिने हे ब्लैक कलर के जींस पहिने हे।

राड खीचत थे पेड़ लामत--

साइकिल ए नीला कलर के अउ ब्लैक कलर के रेंजर साइकिल ब्लैक कलर --

चट्टान हे चार पांच छै ठी बोट हे यह